यहाँ पर कुछ सब्जियों की दुकानें लगी हुई है सब्जी मार्केट है यहाँ पर सब्जियों की दुकानें लगी हुई--

यहाँ पर आ खेत है आ जो की बहुत हरे-हरे खेत हो रहे है उनमें छोटे पौधे लगे हुए है।

यहाँ पर कपड़े की शॉप है और यहाँ पे छोटे बच्चो के कपड़े की शॉप है।

एक लेडी बैठी हुई है जो की चाय का कप रखी हुई है और चाय पी रही है।

लोग बैठे हुए है यहाँ पर कुछ लैंप लगे हुए लाइट लैंप लगे हुए है लाइट जल रही है यहाँ और कुछ --

और अ जिसके नीचे से ट्रैन निकल के जा रही है अ ग्रीन कलर की ट्रेन --

यहाँ पर एक कपडे की शॉप है और जिसमे अ यहाँ पर उम पेंट शर्ट्स के कपड़े अअअ लगे हुए है रैक में--

की हुई है अ जिस पर अ कुछ प प्याज़ और कीस्यू वगेरा रख डले हुए है और एक ओ चाट--

--और अ तीन लड़के लोग बैठे हुए है काउंटर पर और यहाँ पर एक अ अन यहाँ कुछ और कपडे की--

पेड़ लगे हुए है छोटे-छोटे पौधे ब अ लगे हुए है। घास-पूस है।